और वहां पे बहोत सारा जंगल है और काफी सारे पास छोटे छोटे हरे कलर के यहां गमले में पौधे भी हैं।